यह एक कमरे का दृश्य है कमरे में व्हाइट पुट्टी किया गया है इसकी दीवार पर ट्यूबलाइट बंधी हुई है।

यह एक कमरे का दृश्य है कमरे के दीवार पर व्हाइट पुट्टी किया हुआ है।

दुकान के अंदर और बाहर रंग बिरंगे बलून से सजे हुए है।

बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

वहां पर फूल पत्ते भी लगे हुए है।

पीछे सीमेंट का पलस्तरा किया हुआ है।

पिन एक पिंजड़े में दो कुत्ते के बच्चे रखे गए हैं।

इस पिंजणे में लाइट भी लगा हुआ है।

बाहर गेट में कांच लगा हुआ है।

यहां ईक भी रखी हुई है और यहां बहोत सारे महिला पुरुष बच्चे भी हैं।

करकट में लोहे का पाइप भी लगा हुआ है और वहां पर लाइटे भी जल रही है।

इस हाल के ऊपर में भी पिलर लगा हुआ है।

अलमीरा में खाने पीने की वस्तुएं रखे गए हैं।

अलमीरा के बाहर एक काउंटर है उसपे भी बहुत सारे बोतल रखे हुए हैं।

इस हाल में बहुत सारे मशीनें रखे गए हैं जिम करने वाले।

बिल्डिंग के पास दो चेयर भी है वहां एक व्यक्ति बैठा है।

एक काउंटर भी हैं काउंटर के ऊपर एक डायरी रखी हुई है।